जाकर देखिए इस खूबसूरत सी विरान जगह पर जहां पर बहुत सारे लो--

देखिए यहां पर इस तस्वीर में एक जानवर की तस्वीर है जिसके दांत नजर आ रहे है और उसके बाजू में ये गार्डन के अंदर शायद मौजूद है।